ये तस्वीर किसी ऑफिस के अंदर का है इसमें चार कुर्सियां रखी हुई है।

सफेद है। कुछ बच्चे पढ़ रहे है सामने टेबल ब्लू रंग का है एक लड़की खिड़की की तरफ देख रही है बाकि लड़के सब टोपी पहने हुए है ए.सी. लगा हुआ है। पंखा --